कुछ लोग इसमें टहलते दिखाई दे रहे हैं।

आगे एक टेबल लगी है जिस पर सामान रखा दिख रहा है।

किराने की दुकान के बाहर एक वाइट कलर की पन्नी भी लगी दिख रही है।

सामने एक नदी है नदी के किनारों पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

लाइब्रेरी में साइड में बहुत सारी अलमारियां लगी हैं।

इसमें सामने की तरफ एक रोड है।

एक लड़की साड़ी पहन कर सामने खड़ी दिख रही है।